यह तस्वीर एक खेत की है।

यहाँ पे काफी सारी रंग बिरंगे लाइट्स है और लेज़र लाइट्स भी है।

ये तस्वीर किसी स्कूल या कॉलेज के बाहर के हिस्से की है जहाँ पे हम --

ऊपर दीवार के बीचो -बीच में एक --

किनारा दिखाई दे रहा है।

-- की है जहाँ पे हम काफी सारे अंडरगारमेंट्स के बॉक्सेस को बॉक्सेस को --

यह एक नदी के घाट पर स्थित है।

चौराहे के बीचों -बीच में हम एक बड़ा- सा घड़ियाल भी देख सकते हैं।

सामने हमें देखने पे काफी एक हेरिटेच दिखाई दे रहा है।

फ्रॉक टी-शर्ट लोअर --

जोकि कैंप वाली फोल्डिंग चेयर पर बैठा हुआ हैं।

जिसमे सफेद झोला पकड़ा हुआ है और लाल साड़ी पहनी है।

जो की अपनी बारी का इंतिजार कर रहै है।

आगे उसका काउंटर भी लगा हुआ है।

सामने हमें एक बस भी दिखाई दे रही है जो की लाल रंग की है।

इस तस्वीर में हमें एक बिजली घर दिखाई दे रहा है।

यह ऑटो पूरी तरीके से लोगो से भरा हुआ है।